मेज पर लैपटॉप रखा दिखाई--

जिसपर एक बच्चा झूले ले रहा है और--

चल रही हैं उसमें दो व्यक्ति बैठे हुएं दिखाई--

यह एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कि बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं और--

ये एक हॉस्पिटल का कमरा है जहां की कुछ मशीन --

यहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं पटाखे--

भी बहोत सारी मूर्तियां दिख रही है।

दे रहे हैं और कुछ बैग रखे हुए हैं।